ये शोरूम पीले कलर लाल कलर सफेद कलर मे पोताया हुआ है यहाँ पे बहूत सारे--

ये एक स्नेक बार है यहाँ पे बहुत सारी मिठाईयाँ है जिसको फ्रीजर में रखा गया है नमकीन्स हैं ।

यहां पे एक मंदिर है मंदिर के छत में --

बहुत सारे लोग हैं यहां घंडे हैं लाइट्स जल रहे हैं।

और इसमें बड़े-बड़े पेड़ भी लगे हुए है एक कच्चा का रोड है इसके अगल-बगल घास है खेत हैं।

कृष्णा जी बासुरी में जा रहे हैं तथा राधा उनके साथ खड़ी है एक शिवलिंग का भी मूर्ति है।